वो पढ़ाई कर रही है हाथ में पेन लिए हुए है एक लड़का है जो--

एक रेस्टोरेंट है जहां बहुत सारे टेबल लगे हुए हैं चेयर भी लगे हुए हैं।

एक बाइक पे बैठा है कुछ पानी में डुबकी लगाए हुए हैं।

इसका गेट खुला हुआ है नीचे मेन गेट भी खुला हुआ है और दो शटर लगा हुआ है।